कपड़े की दुकान लग रही एक दो कुर्सी रखी हुई हैं।

मुझे लग रहा है ये फोटो किसी सब्जी की दुकान का है।

जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के योगा कर रहे हैं।

जहां पे दूर एक बंदा खड़ा दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारी रंग बिरंगी चेयर भी रखी हुई है।

और एक एरोप्लेन में रखा हुआ है।

आई थिंक ये फोटो किसी के घर की हैं।

एक औरत झाड़ू लगा रही है।

ये फोटो मुझे कोई ढाबे की लग रही है।

यहां पे चारों तरफ बहुत ही हरियाली भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जहां पे बहोत सारी लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।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

और बहोत सारे लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं।

जहां पे बहोत सारे हिरण खड़े हुए हैं।

और यहां पे बहोत सारे छोटे छोटे स्टैचू भी दिखाई दे रहे हैं।